कुछ लोग सामान खरीद रहे है कुछ लोग सामान --

यहां इस चित्र में एक व्यक्ति गाड़ी की कुछ मरम्मत कर रहा है चप्पल पेहने हुए है हाथ में कोई चीज लिए हुए है जो गाड़ी का शायर है।

पानी भरा हुआ है और किनारे-किनारे घास और झाड़ियाँ लगीं हुईं है जो काफी सुंदर देखने में लग रहीं है और काफी हरी-भरी भी है।

एक व्यक्ति बैठा हुआ है आगे स्कूटी खड़ी हुई है और भी सामान जो बिखरा पड़ा हैं।

हाल की दीवाल का कलर पीला सफेद नीला है और हाल में कई सारी चीजे जो रखी हुई है।